एस.बी.आई. का ए.टी.एम. है इसमे एस.बी.आई. का लोगो लगा हुआ है सीसा का गेट लगा हुआ है उसपे पोस्टर चिपकाया हुआ है सूचना लिखा हुआ है बगल मे एक पीला बिल्डिंग दिख रहा है ।

अपना ड्रेस पहने हुए हैं और बड़े ध्यान से सुन रहे हैं ब्रीफिंग को देखने मे अच्छा लग रहा है कोई कंपनी के नीचे ये ब्रीफिंग हो रहा है लाइट का व्यवस्था है।

शोफा सेट जैसा बना हुआ है।